यहाँ एक डामर रोड दिखाई दे रही है जो सामने में कुछ एक लेडीजस हैं पैदल जाते हुए नज़र आ रही हैं। और--

सामने के रोड नजर आ रही है रोड के पहले साइड कुछ बाइके वगेरा भी खड़ी हुई वहाँ लाल कलर का मकान बना है जिसमे लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है सामने धूप निकली --

यह एक गुलाबी शटर दिख रही है जो बंद है और राइट साइड में कुछ लकड़ी के दरवाज़े लगे हुए लॉक लगे हुए नज़र आ रहा है जिसमे टिन शेड है और साइड में कुछ चैनल गेट बंद नज़र आ रहा है।

एक तालाब नजर आ रहा है जिसमे पानी भरा हुआ है साइड में कुछ हरे वृक्ष दिखाई दे रहे है। और साइड मे कुछ--

पे पत्थर की चट्टानें नजर आ रही है और मट्टी के ढेर है और आसमान दिख रही है धूप निकली हुई है और ये दिन का समय है।

साइड में बिजली का ट्रांसफार्मर भी गड़ा हुआ है आसमान नीला दिखाई दे रहा है ये दिन का समय है धूप निकली हुई --

यहाँ बाहर में कुछ जाली लोहे की जाली हुई नजर आ रही है और बाहर में छोटे-छोटे पाइप के लोहे गड़े हुए है जिसमें लाल --

धुप निकली हुई है दिन का समय है कुछ साईकिल वगेरह सामने खड़ी हुई--

तालाब है जिसपे एक नाव चलती हुई दिख रही है दो व्यक्ति बैठे हुए है।

साइड में कुछ हरे पोग वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और दिन का समय हैं आसमान दिख रहा हैं धूप निकली हुई हैं।